हो रही है और हमें नीचे मैट भी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की हैं ये कोई--

बाल्टी रखी हुई दिख रही है जोकि वा वाइट कलर की है और एक कंटेनर भी हमें यहाँ पर रखा हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर एक लोटा रखा हुआ है यहाँ पर हमें कांच के गेट लगे हुए दि --

सामने हमें एक मूर्ति लगी हुई दिखाई दे रही है फोटो जिस पर एक बहुत--

जहां पर हमें एक राम जी और सीता जी का चित्र बना हुआ नीचे दिखाई दे रहा है और उस चित्र के आसपास है हमें पूर्व में दीपक--

ये कुछ कारखाना सा समझ में आ रहा है जहां पर मशीने और भी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे र--

यहां पे इंडक्शन बिकते होंगे और यह पे बहोत सारे पंखे वंखे खोके भी दिख रहे है।

दिखाई दे रही हैं कुछ मुंह में लगाने का दिख रहा है और भी हमें यहां पर बहुत सारे हार्पिक वार्पिक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यह किराना की शॉप दिखाई दे रही यहां पर हमें--

फ्रेंन मोबाइल हॉलीवुड एंटरप्राइजेज हॉलीवुड इलेक्ट्रॉनिक्स साक्षी एंटरप्राइजेज ये दुकान है जहां पर हमें बहोत कुछ दिखाई--

और हमें एक खंभा दिख रहा है सामने और खंभे से हमें चार पांच तार से दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है यह अच्छा सुंदर सा लग र--

ओपन एडिटर ओ_पी_जी पैथोलॉजी मतलब यह हॉस्पिटल है जहां का ये हमें सेंटर का उम्म फ्रंट --